लिखा हुआ है और यहां आगे एक टेबल है और इस टेबल पे दो बड़े बड़े कार्टून रखे हुए हैं।